औरो और पाया पर भी कुछ कलम वलम दिख दे रहा--

और पेड़ पौधे हरे दिखाई दे रहे हैं।

इसमें जो है राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ नहीं दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में मुझे अस्पष्ट रूप से--

आगे देखने पर पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं लेकिन राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ दिखाई नहीं दे रहा--

इसमें स्पष्ट रूप से क्या घिरे हुए हैं क्या नय घिरे हुए हैं स्पष्ट रूप से।

इस शॉप में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक के--

राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं।

आस पास रूपे दिखाई दे रहे हैं की एक--